और साथ ही एक पहिया टाइप का दिखाई दे रहा है जिसका कलर जिसपे हरे रंग कलर का पोता हुआ है उपर लाइट नजर आ रही है।

सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर एक बहुत बड़ा और चौड़ा टावर लगा हुआ है ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

सामने दो गमला रखे हुए नजर आ रहे हैं जिनमें एक महीना का सारी का पेड़ लगा हुआ एक में मनी प्लांट का पेड़ लगा हुआ है एक में--

सामने तार स पे बहुत सी बेला जाती हुई नजर आ रही है हरी हरी ।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

सामने एक किराना स्टोर नजर आ रही है जिसमें कई प्रकार की क्रीमें भी दिखाई दे रही ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

साथ ही देवी राक्षस के ऊपर खड़ी हुई नजर आ रही है और नीचे रही है शेर की मूर्ति बनी हुई नजर आ रही है।